के अंदर हमें पहाड़ के अंदर एक गुफ़ा दिखाई दे रही है। पहाड़ का रंग हमें अंदर कत्थाई हरे रंग से भरा हुआ दिख रहा है। होल बड़ा काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है। उसके आसपास कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसके पीछे सफेद कलर की एक दुकान कांच की दिखाई दे रही है उसके सामने नीले कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

पीले रंग का ट्रक भी दिख रहा है जमीन भी दिख रही है कुछ लाल रंग की मशीनें नीचे पड़ी हुई दिख रही हैं।

अंदर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका शटर बंद दिख रहा है ब शटर पता नहीं --

इसकी नंबर प्लेट पीले रंग की दिख रही है उसके पीछे एक और कार दिख रही है इस दुकान के पीछे एक और दुकान दिख रही है वहाँ पर एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है जिसमे पर काले रंग के तार जाते हुए दिख रहे हैं सामने एक और काले कलर की गाड़ी खड़ी है।

चमतके हुए ए.सी भी दिखाई दे रहें हैं इसका फर्श कत्थई रंग का फर्श भी बना हुआ दिख रहा है।